यहां पे चुप लाइट भी लगाए गए हैं।

बहोत सारे प्लेटा है पानी के जग्गा ग्लासा बाजू में बहोत सारे यहां पे पौधे बूटियां भी हैं यहां पे।

यहायहां पे बहुत सारे बड़े-बड़े झाड़ा है।

इयहां पे एक डबल माले की--

बैठने के लिए चेज भी है यहां पे दो आदमियां बैठे हुए है बैग भी है।

कपड़ों की दुकान दिख रही है यहां पे---

बहुत सारे घरान दिख रहे हैं और नीचे बेंच दुकानें लगी हुई है लोग भी है नीचे यहां।

इसे यहां पे रस्सी बांधी गई है।

वाज़ू में यहां बहुत सारे--

कटिंग दुकान दिख रही है।

यह एक यहां पे बड़ी सी मंदिर दिख रही है।

ये एक यहां पे बड़ी सी--

ये एक यहां पे बड़ा सा जिम है।

यहां पे बहुत सारे मशीना है।

ये एक यहां पे गिराउण्ड नीचे यहां पे---

यहां पे बेड है यहां पे एक लेडी बैठी हुई है।

बहुत सारी तरकारियां हैं दो लोग भी यहां पे खड़े हुए हैं।

यहां पे एक बड़ा सा टेबल दिख रहा है।

ये एक यहां पे बड़ा सा बैंक दिख रहा है।

ये एक यहां पे बजाज शोरूम है टू व्हीलर गाड़ियां का।

यहां पे चेयर भी है यहां पे दो लोग दिख रहे--

और कुर्सियों के ऊपर बैठे हुए--